इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये मंदिर की तस्वीर है जो पहाड़ी इलाका मे है यहां पे।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यहाँ पे संगमरमर के बहोत सारे पत्थर हैं और उस साइड बहोत उम्म बड़ी बड़ी दीवाल है ईट हैं।

दुकान खुला हुआ है बगल में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है स्कूटी खड़ी हुई है।

सामने पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

बादला पूरा छाया हुआ है जो काला और व्हाइट में है।

पत्थर पे कुछ लिखा भी है।

छोटे छोटे पत्थर टूटे हुए हैं।

और यहां पे भीड़ लगी है बहोत लोग खड़े हैं ए_टी_एम से पैसे निकालने के लिए और सामने से शटर लगा हुआ है जो की रेड कलर का है।

सामने बालकनी है और बाहर छोटे छोटे पौधे लगाये गए हैं।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

और इस साइड बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सभी औरतें छठ पूजा अ कर रही हैं।

और इस दुकान में ब्राइडल सैंडल भी रखे गए।